--जैसे कि मैं देख रहे है यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो कि किसी स्कूल की इमेज लग रही है यहाँ पर बहोत बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

और इसमें बहुत- सा लाल कलर से कुछ लिखा हुआ है ये रात का इमेज लग रहा है यहाँ पर रंग- बिरंगी लाइट लगी हुई है और यह ऊपर एल्क्ट्रिक वायर दिखाई दे रहा हैं।